और ऊंचाई भी बहुत है और यहाँ पानी भी देखना कितना भरा हुआ है।

पंजाब बैंक देख रहे होंगे आप नीचे ऑफिस है और मस्त यहां गेट भी लगा हुआ है। जनरेटर भी देख रहे होंगे रखा हुआ है।

हुए चल रहा है और एक भईया बैठे हैं।

यहाँ पे स्टेट बैंक दिख रहा होगा और यह कांच भी लगे हुए हैं और यहाँ शटर लगी हुई है अलग कलर की --